यहां दो आदमी खड़े हैं एक दुकान में और माक्स लगा कर--

घर है जो--

यहां एक सुंदर रूम है।

जहां लाल रंग की गाड़िया--

राघु राज है।

य हा अने को मछलिया।

जिसका पोस्टर जिओ --